'' यहाँ पे पीछे चार टीचर खड़े हुए हैं जो अपनी तस्वीर निकलवा रहे हैं पड़ोस में एक मैम भी हैं जिन्होंने नीली रंग की साड़ी पहनी हैं यहाँ जीने भी बने हुए हैं पास में एक स्टॉल पड़ा हुआ है। ''

यहाँ पे एक आदमी एक बच्चे की सर्जरी कर रहा है उसमे तौलिया रखी हुई है| यहाँ पे बहुत सी चीजें रखी हुई है।

यहा एक शादी का मंडप है यहा पे बहुत सी कुर्सियां पड़ी हुई है जो सफ़ेद रंग की है यहा पे एक आदमी खड़ा हुआ है मंडप फूलों से सजाया गया है।

यहा पे एक घर बना है जो सफ़ेद रंग का है यहा पे जाल की खिड़किया लगी है उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है यहा पे बहुत से पेड-पौधे भी है यहा पे एक खम्बा भी लगा हुआ--